यह एक मार्केट दिखाय दे रहा है। यहाँ पे बहोत सारी फोर व्हीलर और टू व्हीलर भी है।

लोहे की सलाखों से यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है।

यह एक दुकान दिखाई रही है जो कि फुटपाथ पे लगाई गई है।

यहाँ कुछ अंदर लोग दिख रहे हैं। यह कॉलेज बहोत बड़ा दिखाई दे रहा है।

गेट के सामने एक चौकीदार दिख रहा है।

यह एक बास के टोखने में रखा है।

पार्लर में एक लडकी बैठी हुई है।

यहाँ कुछ दुकाने और एक मलटी बन रही है।

बीच में चौकोन आकर का गार्डन है।

हॉल मे जो दीवाल में जो कलर है।

यहाँ पे अलग अलग प्रकर डोरबेल --

यहाँ एक बीच में ऑरेंज खंबा भी दिख रहा है।

शॉप में बहुत सारा सामान दिख रहा है।

ऊपर चढ़ने के लिए जिससे सामान निकाला जाता है।

और कुछ लोग रास्ते से जाते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक कार का शोरुम दिखाई दे रहा है।

मंदिर के सामने बोहोत सी सुंदर झांकी दिख रही है।

पीछे येलो कलर का पर्दा लगा हुआ है।

जो कि मुझे कुछ लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।

ऊपर स्काई ब्लू कलर के आसमान छाये हुए हैं।

तो बोहोत सारी सब्जियां भी दिख रही हैं।

शंकर जी के हाथ में त्रिशूल भी है।